और पीछे में एक मटका है पानी पीने वाला और ऊपर मे गिलास है और पीछे में बहुत सारे डब्बा डब्बा है और पीछे में एक कुर्सी टाइप का छोटा सा है बैठने वाला--

और पीछे में ऊपर पंखा है और लगता है कि ये लोग बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं।

चप्पल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में टंगा है लेकिन लिखा हुआ है कुछ लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है।

यहाँ पर बहुत ज ज्यादा मिर्चा है जैसे मेरे को लगता है और कैरेट भी दिखाई दे रहा है और इसमें करेट में आलू भी दिखाई दे रहा है।

ऐसा लगता है कि मुझे यह बस स्टैशन है और यहाँ पर बहुत सारे बस दिखाई दे रहे है मुझे और यहाँ पर लोग भी खड़े है एक लड़का उधर जा रहा है जैसे लग रहा है।

और इस परस में आप ए_पी_एस आर_टी_सी भी लिखा हुआ है।

मुझे ऐसा लगता है की ये एक डॉक्टर भी हो सकते है क्यों कि नीला जो पर्दा पीछे में दिखाई दे रहा है वैसा डॉक्टर के रूम में होता है और ये बात कर रहा है।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

खड़े हुए हैं और सामने में मुझे दो गोड़ियां लड़की दिखाई दे रही हैं जिन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है जिसमें जल रहा है और बहुत सारे लोग हैं यहां पर।

ऐसा लगता है कि यह एक बहुत बड़ा --

घर है टाइप के मुझे लग रहा है और इसके सामने में पेड़ है जिसमें अलग-अलग प्रकार के फूल हैं जैसे लगता है सामने में दो ठो दो ठो ड्रम भी हैं और दो लड़के जा रहे हैं वो लोग बाइक में बैठे हुए हैं।

यहाँ पर मुझे सड़क दिखाई दे रहा है। इधर से भी सड़क है और सिद्धा वाला भी सड़क दिखाई दे रहा है और एक लड़का है जो बाइक मैं बैठा हुआ है और ट्रक गुजर र रहा है जैसे मुझे लगता है। और सामने में भी कुछ बना हुआ हैं जो मुझे--

मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऑफिस या हॉस्पिटल हो सकता है जहां पर बैठने के लिए कुर्सी सजाया गया है जो काला-काला रंग का है एक साथ में जुड़ा हुआ है।

औरऔर यहाँ पर बहुत सारे पक बजाने का ये पकड़ा हुआ है यहाँ पर दो महिला बैठे हुए है और यहाँ पर एक लक लड़का है जो तबला को पकड़ा हैं ।